ये सारी दुकान हर माल जैसी दिखाई दे रही हैं जिसमें किचन कि यूज की सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं।

मुझे एक एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है एयरपोर्ट के अंदर का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें मुझे एक लाइट खड़ा दिखाई दे रहा है फ्लाइट के चारों तरफ नीले-नीले डब--